इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पीछे खुला आस--

इस पिक्चर में आप एक छोटी सी दुकान देख सकते ह--